एक टंकी बनी हुई है पानी की और एक टावर भी है।

यह यहां पर बहोत सारे पेड़ पौधे हैं और पानी भी है।

कुछ लिखा हुआ है मधु टावर मधु टावर लिखा हुआ है और पास में एक टावर भी है बिजली का खंबा भी है।

बहोत ज्यादा भीड़ भी है और एक आदमी मैदान में दिखाई दे रहा है।